ये एक बहुत बड़ा सा रूम है जहाँ पे--

बहोत सारे पंखे लगे हुए हैं बहोत सारी लाइटे लगी हुई है। बहुत सारे बॉक्सेस लगे हुए हैं। दो दो बड़े बड़े--

ये एक बहुत बड़ा सा रूम है जिम बना हुआ है जहाँ पे--

और नीचे भी बहुत सारी टायर रखे हुए टायर को ब्लैक और येलो में कलर किया गया है।

ये एक बहुत बड़ा सा वाशरूम है जहाँ पे--

रूम है और उसके अंदर बहुत सारी टाइल्स लगाई हैं जिसमें--

ये एक बहुत बड़ा सा स्टोर है जिसका नाम है।

पता शिक्षक नगर गली नंबर पाँच सवंत जेवरी रोड बेतिया।

घर के बीचों बीच जहां पे बहोत सारे पेड़ पौधे लगे हुए है बड़े बड़े पौधे छोटे छोटे पौधे और बहोत सारी फूले लगाई हुई है पे--

बहुत सारे पानी में भी बहुत सारे घास सुखे हुए जल कुंभी बहुत सारे हरे भरे घास सुखे हुए हैं पानी में भी--

डिजाइन किए गए पंखा लगा हुआ लाइट लगी हुई है।

टिशू पेपर रहे हुआ है एक छोटा सा फूल रखा हुआ है खास डिजाइन पे--

बहुत सारे पंखे के भी बने हुए हैं बहुत सारे अलग-अलग पंखे भी हैं स्विच भी है लाइट लगी हुई है पंखा भी चल--

डेस्क बने हुए हैं और बोहोत सारे बॉक्सेस बने है जिसमें बोहोत सारे कपड़े रखे हुए हैं एक आदमी है जो दुकान पे बोहोत सारे कपड़े बिखेरे हुए हैं।

उम्म फिलिप्स का बहुत सारा डी_जे बॉक्सेस रखे हुए हैं बहुत सारे जार रखा हुआ वाशिंग मिक्सी रखा हुआ एक लाइन बहुत --

नीचे बहुत से सीढ़ियां बनी हुई बहुत --

बेतिया रामानाथ साउंड स्टूडियो जहाँ पे बड़े-बड़े बॉक्सेस रखे हुए हैं टेबल रखा हुआ है बाइकिल राइड --

एक बहुत बड़ा सा पीला पेड़ उसको गिरा हुआ उसके ऊपर से तार लगा है काँच लगा है सीसा लगाया है।

सेंट्रल हाउसिंग वेयर वेयर हाउसिंग --

ये बहुत बड़ा सा पेट्रोल पंप है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां आ के खड़ी है बहुत सारी गाड़ी है।

और एक बाइक का शोरूम है जहाँ पे बहुत सारी बाइकें रखी है बड़े-बड़े पेड़-पौधे बड़ा-बड़ा टायर रखा हुआ है।

एक आदमी खड़ा है बड़े बड़े बोतल घडी है।

हम बहुत बहुत सारे पेड़ पर लाइटें लगी हुई है नीचे में बाइक खड़ा है बाहर में डस्ट बिन रखा--

व्हाइट में है पिंक में हैं येल्लो में हैं बैगनी में हैं छोटे-छोटे फूल है बहोत सारे अअअ हैं और उसके बेगल में बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं।

एक डेस्क लगा हुआ है और उसके ऊपर में बड़ा सा एक तिजोरी बना हुआ उसके बगल में एक पानी का रखा हुआ है और उस मशीन रखी हुई हैं जिस से--

एक बड़ासा हॉस्पिटल हैं। जहाॅं पे बहोत सारी हॉस्पिटल के--

एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा है जिसके बालों को काटा जा रहा है और वहाँ पे एक लाइट रंगा बड़े बॉक्सेस में सामान रखे हैं।